दो तीन झंडियाँ दिख रही है पेड़े दिख रही है रोड दिख रहे है रोड के नीचे बोर्ड दिख रहा है उसपर कुछ लिखा हुआ है नजर आ रहा है घास गरा हुआ है एक झाँझरी दिख रही।

रोड दिख रहे है एक नाइ पीले कलर की गाड़ी दिख रही है पेड़ पोधे दिख रहे है गेंद दिख रहे हैं।

कार दिख रही है इस पे नंबर प्लेट दिख रही हैवाइट कलर की और रेड कलर की नाम लिखा हुआ है झारखंड सराकर लाइटे दिख रही है कांच दिख रही है कांच के अन्दर पेड़ की एक छाया दिख रही है।

खिड़कियाँ दिख रही है जुली के पेड़ दिख रहे है कचड़े दिख रहे पत्थर वेग्यारह दिख रही कीचड़ दिख रहे है पि--

पेड़ पोधे दिख रहे है खम्भे दिख रहे है रेंगे बिरंगे रोड दिख रहा है रोड पे भी कलर दिख रहा है दुभा दिख रहा हैग्रीन कल--